इन गांव में हम गरीबों का घर बस्ता है और --

इनमे सभी तरह के यात्रियों का स्वागण है।

और आगे बढ़ने की चांसेस ज़्यादा --

ये रहा अपना पर्सनल हम्म सीक्रेट जगह अपना ऑफिस का पार्ट टाइम जॉब के तहत अपने काम को घर बैठे काम किया करते है और --

यह है चर्च चर्च में लोग अपने गॉडफादर को बोहत दिलो-जान से चाहते है मानते है और उनका पूजा करते है। अऽ --

स्टेट से लोग-आते जाते है और कितने लोग आन-जान करते है इन स्टेशन से।

हां घोहो कलम कॉपी किताब हर जगह का पैंसिल हर तरह का कलम मिल जाता है।

हत्या का सर्विस वाला आर्मी पुलिस नकोरि वाला में है।